यह एक केक का तस्वीर है जिस पर पाँच नाम का कैंडल रखा हुआ हैं शायद यह किसी बच्चे के बर्थडे को मिलाया गया है जिसकी उम्र पाँच वर्ष हो चुकी।

निगम है यह एल.आई.सी. लोगो के लिए लाया गया है जो अपने भविष्य को सही बना सकते है।

इसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और यहां चारों ओर गाछ ही गाछ भरे हुए हैं।

और इसकी डिजाइन आकर्षक है जो किसी मार्बल से बनाई गई है।

यह किसी शादी फंक्शन का एक बहोत ही शानदार समारोह --

यह एक बर्थडे का केक है जो किसी घर में मनाया जा रहा है। यह जिसका भी बर्थडे है उसका उम्र एकतालीस साल हो चुका है और यह --